उसके किनारे गमले भी रखे गए हैं बहुत सारे उसमें --

जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गुरुपुर का रोड है और यहां का --

जो भी है रोड बोहोत ही चौड़ा है बोहोत ही अच्छा है। यहाँ पे बोहोत सारी गाड़ियां चल रही हैं फोर व्हीलर है ऑटो दिख रहा है।

यहां पर नाच कर रहे हैं। डांस कर रहे हैं। मौज कर रहा है और एंजॉय कर रहा --

अच्छे लोग यहां पे दुकान रख के अच्छे से मतलब सामान बेच रहे हैं।

माता का फोटो लगा है दुर्गा माता राम सीता लक्ष्मण बजरंबली।

जैसे कि दिखाई है कि यहां पे बहुत बड़ा निना थाई --